और उसमे लोहे के काफी सारा सामान है और कुछ बंदे बना रहे हैं बॉडी ।

सामने एक मकान नजर आ रहा है और मकान के सामने घर में अंदर मैट बिछा हुआ है और एक गेट भी नजर आ रहा है।

बहोत ही गेट नजर आ रहे हैं गेट बंध है और ऊपर कुछ --